ये पिक्चर विशाल मेगामार्ट की है जिसके दीवार पर स्टोर के टाइमिंग्स भी लिखी हुई हैं।

और इस दुकान पर एक ट्रॉली भी लगी हुई है बाहर की तरफ--

ये पिक्चर एक मैदान की है जहां दो ट्रेवलर पार्क हुई हुई हैं।

और एक तरफ एक बाइक भी पार्क हुई हुई है और यहाँ नीले रंग की चेयर भी रखी हुई हैं।

ये पिक्चर एक गीले रोड की है और सामने दो बाइक पार्क है और एक स्कूटी भी पार्क हुई हुई है और सामने टाटा मोटर्स का शोरूम है।

लिख रहे हैं और बहुत सारे पेपर टेबल में पड़े हुए भी हैं और यहाँ की दीवारों का रंग क्रीम सा है।

ये पिक्चर एक रेस्ट्रऑन की है यहां पर टेबल सारी सफेद हैं और यहां की चेयर --

वाइट कलर की हैं और टेबल के ऊपर--

और फूलों की जूलरी भी रखी हुई है और पीछे कॉस्मेटिक का सामान भी अवेलेबल है।

ये पिक्चर एक टेबल की है जिसके ऊपर काले रंग का फोन रखा हुआ है और उसके ऊपर पीले रंग का एक लैंप भी है।

और टेबल के ऊपर बिल रखा हुआ है और साइड में सफेद रंग के बेडशीट वाले बेड भी हैं।

पिक्चर एक शोरूम के बाहर की है जिसके दरवाजे ट्रांसपेरेंट है और जिसका नाम नारंगी रंग से लिखा हुआ है।

और जिसकी डेकोरेशन पीले और नीले बलून से हुई हुई है और ये इसकी जीनों का रंग काला है।

यहाँ मछलियों को काटने का सामान भी रखा हुआ है और वेट मशीन भी रखी हुई है।

और मछुवारों ने मास्क भी पहना हुआ है यहाँ अलग-अलग तरह की मछलियां हैं।

और बाहर कुछ और लोग भी खड़े हैं और एक बाइक भी पार्क हुई हुई है।

रस्सी से बंधा हुआ है और उसके सामने एक टोकरा रखा है जिसमें उसका चारा है और यहाँ की दीवार का रंग सफेद है।

यहाँ के जाल का रंग काला है और पूरी बिल्डिंग का रंग क्रीम सा है और वहाँ की ग्रिल्स काले रंग की हैं।

और आसपास काफी सारे लोग भी हैं और एक बूढ़े आदमी नीचे बैठे हुए भी हैं।

ये पिक्चर एक कंस्ट्रक्शन साइट की लग रही है जहाँ पर बहुत सारे मिस्त्री छत बना रहे हैं।

ये पिक्चर एक बनिए की दुकान की लग रही है जहाँ पे तरह-तरह के मसाले--

तेल की बोतले डाइपर वगैरह रखे हुए हैं।

और जो बस ड्राइवर है उसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है और काले रंग की पैंट --

ये पिक्चर एक दीवार की है जिस पे एक्सॉस्ट फैन लगा हुआ है और जिस पर किड्स लिखा हुआ है।

और पास में ही एक झूला भी लगा हुआ है बच्चों के खेलने के लिए--

और यहाँ एक सफेद रंग की गाड़ी भी पार्क हुई हुई है और कोका-कोला के बैनर भी लगे हुए हैं।

ये पिक्चर एक लाल रंग के सोफे की है जिसके ऊपर गोल्डन कलर की पॉलिश हुई हुई है।

इसके ऊपर दो लाल रंग के गांव तकिए भी रखे हुए हैं इस पिक्चर के बैकग्राउंड में गोल्डन कलर की दीवारें हैं और--

और बहुत सारे पत्थर भी हैं और चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है और आसमान का रंग कुछ जामुनी सा है।

ये पिक्चर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज पठानकोट की है इसके दरवाजे के बाहर कुछ लड़के खड़े हुए हैं।

काफी सारे चेयर रखी हुई हैं और आगे की तरफ दो कथई सोफा रखे हुए हैं बीच में एक लाल सोफा है स्टेज पर--

और दो कटोरियों में दो चम्मच भी रखे हुए हैं।

गोभी खीरा और गाजर--

ये एक रोड की पिक्चर है जहाँ आसपास काफी सारी हरियाली है और यह खाली रोड है।

और ऊपर की तरफ यहाँ रास्ते दिखाने का--

और टेबल भी लाल रंग की है और चेयर काले और सिल्वर रंग की हैं।

इस पिक्चर में सभी औरतें सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई हैं और इनके हाथ में कुछ मोमबत्तियां हैं।

ये ए वन नमकीन के बाहर की पिक्चर है जहाँ पर--

हरियाली है और नीले रंग की बेंचेस लगी हुई हैं।

क्रीम रंग के कूलर भी रखे हुए हैं यहाँ की दीवारों का रंग सफेद है।

और यहाँ की चेयर रंगबिरंगी हैं टेबल लाल रंग की है कुछ चेयर कथई रंग की हैं और कुछ पीले रंग की हैं।

इस कमरे में नीले रंग का कपड़ा बिछा है उस पर एक कंकाल लेटा हुआ है और उसके मुंह में ऑक्सीजन पाइप भी लगा है।

ये पिक्चर लड़कों के कपड़ों की दुकान के अंदर से ली गई है।

इस स्कूल की दीवारों का रंग सफेद है और रंगबिरंगा भी है कहीं-कहीं से।

ये एक मोटरसाइकिल स्टोर के बाहर की पिक्चर है इस मोटरसाइकिल स्टोर के बैनर का रंग--

ये पिक्चर एक जंगल की है जिसमें चार-पांच हिरन खड़े हुए हैं और एक हिरन खा रहा है।

आसपास काफी ज़्यादा हरियाली है और लंबे-लंबे पेड़ हैं।

ये पिक्चर एक नाई की दुकान की है जिसमें एक लड़का अपने बैठे हुए बाल कटवा रहा है।

ये पिक्चर हाइड आउट नाम के रेस्टों के बाहर की है।

सजावट हुई हुई है और अंदर एक आदमी भी खड़ा है।

इस पिक्चर में एक आदमी सफेद रंग की दीवार पर बैठा हुआ है।